और देखो बैठने की भी जगह बना रखी है यहां पे।

और ये ना मंदिर हैं देखो इनके स्टोनो तरफ ना बोर्ड भीं लगे हुए रेड कलर के--

और पीछे कितने सारे वह दिख रहे हैं मेरा मतलब बॉक्स लग रहे है पीछे--

और जिम का सारा समान भी दिख रहा है इसमें देखो टायर भी रखे हुए हैं और यहां पे टेबल भी है ऊपर पोस्टर भी लगा हुआ है।

इनमें बैलून भी लग रखे नीले और व्हाइट कलर के।

और पर्दे भी लगे हुए हैं सोफा भी रखा है लाइट लगी हुई है दीवार पे एक--

सोफे रखे हैं और सामने दो तस्वीरें दिख रही हैं और एक पोस्टर सा लगा हुआ है और शूज दिख रहे हैं।

ये पांच आदमी खड़े हैं इस कार के पास जो वाइट वाली कार है।

और आगे भी बहुत अच्छा सजा रखा है लड़ियां लगा रखी हैं और टेबल लगा रखा है।

और ऊपर भी भर रखा है छतों पे भी भर रखा--

ऊपर सीढ़ियां हैं सीढ़ियां चढ़कर देखो ऊपर घोड़े पर--

ब्लैक कलर की बाइक और कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं और एक अंकल छाता लेकर--

इसमें एक तुम वो रखा है व्हाइट कलर में मशीन से रखी है।

अब ये देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग सी बना रखी है ब्राउन कलर में ऊपर देखो सजावट सी भी कर रखी है।

अह और लाइट सी भी सा रखी है बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं और एक--

घर के बाहर भी खड़ी है जो बोल रही है और देखो नीले कलर की इनकी खिड़की भी हैं।

ऊपर एक अ मतब लिखा भी हुआ है और ये ऊपर घर है इसके।

अब इसमें आपको दिख रहा है। ये अंकल बिस्कुटों के पैकेट लेकर बैठे हैं। कुर्सी पर और टेबल पर रख रखे हैं।

मिट्टी का सारा बना रखा--

और देखो सारी औरतों के हाथ में है पिंक कलर का बॉक्स गिफ्ट वाला होता है ना ऊपर पैकिंग करवा रखी है पिंक कलर की।

और दीवार पे भी तस्वीरें लगी हुईं हैं पीछे भी इतनी तस्वीर रखी है टेबल पे देखो कृष्णजी राधाजी की तस्वीर है इतनी अच्छी।

साड़ी है दुपट्टे हैं है ना और कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर अभी देखो नाम लिखा हुआ है विमल ऊपर देखो वो दिख रही है दुकान सी --